ऐसा लग रहा है कि ये किसी ई-रिक्शा की शॉप है जैसे कि यहां से रिक्शा खरीद रहे हैं और यहां पर अ प्लाइ का कुछ फर्श हमे दिखाई दे रहा है ओर पीछे भी एक रिक्षा है।

जैसा की आप देख रहे हैं यहाँ पर हमे एक अ खेल का मेदान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक खिलाड़ी थोड़े पुश अप वगेरा कुछ एक्सर्साइज़ कर रहा है और इनका कोच --

जैसा कि आप देख रह हैं यहां पर हमें एक मदरसा दिखाई दे रहा है। जहां पर मुस्लिम बच्चे अं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपने धर्म की।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर भीड़ में खेल का मैदान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एथलेटिक्स गेम्स हो रहे हैं जिसमे रिले रेस हो रही है।

के साइड में ही काफी अ सारे घर में प्रयोग की जाने वाली सामान की दुकान है और मसालों की दुकान भी यहाँ --